यहां कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पीछे की तरफ एक ढाबा दिखाई दे रहा है।

यह एक हॉस्पिटल है इसमें दो खिड़कियां लगी हुई है।

यह एक मैदान है जहां पर दो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह एक कम्प्यूटर कोचिंग सेंटर है जिसके दरवाजे कांच के बने हुए हैं।

यहाँ की दीवारों पर बहुत अच्छे थॉट लिखे हुए हैं।

यह एक पिज़्ज़ा शॉप है जहां पर बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिन पर पिज्जा और उनके रेट भी लिखे हुए हैं।

यह एक फलों की दुकान है जहां पर बड़े बड़े अक्षर में माँ चंचल ड्राई फ्रूट्स लिखा हुआ है।

यह एक कार है इसमें एक औरत बैठी है जो गाड़ी चला रही है।

यह एक दुकान है जहां पर बहुत सारे लाकर दिखाई दे रहे हैं जिनका गेट क्रीम कलर का है।

यहां पर अलग अलग खानों में अलग अलग चीजें रखी हुई है जैसे शैंपू तेल च्यवनप्राश आदि।

यहां पर डिजाइन से बुक्स लगा रखी है यहां ऊपर की तरफ बोर्ड लगा रखे हैं।

मेज पर बहुत चार पांच गिलास रखे हुए हैं और पानी का जग रखा हुआ है।

यह एक हॉस्पिटल है जहां पर एक बड़े पोस्टर पर ग्रीन सिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

इस हॉस्पिटल का गेट पीले रंग का दिखाई दे रहा है जहां एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।